सलून दिख रहा है सलून का नाम हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सलून है।

ये एक तित्र है तित्र एक--

बहुत सारे वेद रखे हुए हैं एक डॉक्टर एक सिस्टर खड़े हुए हैं।

चित्र में एक बड़ा सा होल दिख रहा है।

लड़का यहां पर अब आच में अपनी सेल्फी ले रहा है लड़के ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए हैं।

घर के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं।

इस चित्र में एक बड़ा सा सड़क दिखाई दे रही है।

सड़क पर एक एम्बुलेंस दिखाई दे रही है एक लड़का फोन पे बात करता हुआ दा रहा है।

चित्र में हमें बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे है।

गुरुद्वारे की बिल्डिंग सफ़ेद रंग से पुती हुई है बाहर ऑरेंज कलर का झंडा लगा हुआ है।

बहुत सारे गुब्बारों से सजा हुआ है।

तालाब में दो बतक दिखाई दे रही हैं जो काले रंग की हैं।

यह तित्र एक नरसरी का है।

आगे एक हरे कलर का पर्दा दिख रहा है बहुत सारी कुंजियों में पानी भरा हुआ है।

घोड़े की मूरत एक बेंच पे बनी हुई है।

एक बड़ी सी वैन खड़ी हुई है।

बीच में एक लाल डस्टबिन रखा हुआ है।

क्रिसमस का केक लगाया हुआ है।

स्टेज पर बहुत सारे लोग ड्रामा कर रहे हैं।